और दो तीन साइकिल भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।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

ये किसी कॉलोनी की तस्वीर है।

यहां पे एक बड़ी सी सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बहोत सारे फ्लैट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ठेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक औरत है जो की लाल कलर का थैला लेकर जाती हुई भी दिखाई दे रही है।

वहीं इसके चारों तरफ कुछ गमले रखे हुए हैं जिनमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे दो बड़े बड़े मंदिर जैसे बने हुए नजर आ रहे हैं।

ये किसी बिल्डिंग के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जोकि एक बहोत ही पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है।

जहां पे एक आइसक्रीम का और एक कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बैठे हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने ग्रीन कलर की जैकेट डाली है और एक हे हेलमेट भी पहना है।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

यहां पे एक आ कार है जिसका आगे से बोनट भी खुला हुआ नज़र आ रहा है।

यह एक छोटा सा गार्डेन बना हुआ है जिसमें चार अलग अलग कलर के झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये किसी बाजार की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक हरे कलर की बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।